यह छत से ली गई फोटो है। इस फोटो में दिखाया गया है।

पेड़-पौधा भी है बिच मै एक शेयर मै एक जैसा बना हुआ है उसके उपर--

टेबल का कोई सिल्वर कलर का बना हुआ है। निचे हरे रंग का कारपेट बिछाया गया है और लाल रंग का भी--

यहाँ पे बोहोत बरे-बरे मछली है। कुछ लम्बे-लम्बे मछली भी है।

वहाँ पिक्चर ये बोहोत बड़ा स्टेडियम है।

टोकरी रखी हुई है एक साइकिल पे टोकरी रखा हुआ है एक आदमी नीचे बैठ के सब्जी बेच रहा है।

यहाँ पे तो डॉक्टर है। एक डॉक्टर एक

काफी सारे आदमी ये ठंड के समय है। काफी ओने टोपी पेहने है तो काफी ओने सर पे कपड़ा--

दूर तक हरयाली फैले हुए है। साथ-साथ में सब है।

छत ढलाई का काम कर रहा है पीछे --